जैसे की मैं देख पा रही हु यहाँ पर एक कमरा है जहाँ पर दिवार में मिक्कीमाउस लगा हुआ है काले रंग का --

ये लोहे से बना हुआ है तथा यहाँ पर जो जमीन है वो भूरे रंग की है।

परात में मछलियाँ रखी हुई है जो की सफेद रंग की है तथा यहाँ की जो दिवा जमीन है।

यहाँ एल जी लिखा हुआ है तथा यहाँ सैमसंग लिखा हैं।

आसमान सफेद और नीला है और बैगनी--

सर्टिफिकेट जो है उसका फ्रेम उसका काले रंग का--

आसमान सफेद है यहाँ पर तार गये हुए हैं।

इनकी जो एक खिड़किया है वो जो कांच की शीशे की बनी हुई नीले रंग की--

दीवारों का रंग जो हैं वो सफेद रंग का है सफेद रंग का पंखा लगा है --

रेलिंग लगी हुई है सफेद और काले--

तथा यहाँ पर नीचे पिले कलर का एक बोर्ड लगा हुआ है पेड़-पौधे लगे हुए --

बड़े-बड़े और आसमान नीला और सफ़ेद है नीचे की जो फर्स है वो हरी है।